चद्दर के ऊपर रंग-बिरंग के फूल लगा है देखने में काफी सुन्दर लग रहा है।

यह एक घर है जिसमें तीन आदमी खड़े हो कर के गेट लगा रहा है एक आदमी सीढ़ी पर बैठा हुआ है और एक आदमी सीढ़ी को पकड़ करके खड़ा है।